यह एक मूर्ति है जो की हनुमानजी की मूर्ति है वह सीढ़ियों के ऊपर खड़े हुए है सीढ़ियों का कलर लाल है।

और आसमान का कलर सफेद है कुछ पेड़ पौधे हरे-भरे लगे हुए हैं नीचे जमीन पर घास लगी हुई है और गदा लिए हुए हैं भगवानजी।

यहां एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जो की पूरी टीन से बनी हुई है एक खंभा है जिस्म- जिसमें बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं एक बाउंड्री है।

ये एक होटल का कमरा है जिसमें पड़दे लगे हुए है एक टेलीविजन है जोकि थोड़ा बड़ा है एक दरवाजा है एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

ट्रक के बाजू मे एक बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है ज़मीन ग्रे कलर की दिखाई दे रही है और असमान ग्रे और व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ।

यह एक द्रश्य है जिसपे आसमान दिखाई दे रहा है और पिछे पहाड़िया दिखाई दे रही है एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

और कुछ सामान रखा हुआ है जो की ग्रे कलर का दिखाई दे रहा ह एक दीवार है जो की सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़-पौध भी दिखाई दे रहे हैं जो की हरे कलर के हैं नीचे जमीन पे घांस लगी हुई है एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है और पीछे काला बैकग्राउंड भी दिख रहा है।

यहाँ एक आसमान दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का नजर आ रहा है कुछ खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद और नीले कलर की दिखाई दे रही है एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो कि पीले और लाल कलर की दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग ग्र-ग्रे कलर की है ऊपर नीले कलर से पुता हुआ है सामने एक रास्ता दिखाई दे रहा है कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है एक जमीन दिखाई दे रही है। जिसपे र--

कुछ लोग नजर आ रहे हैं कुछ पानी भी नजर आ रहा है एक बाउंड्री पे एक आदमी खड़ा है और कुछ घास भी नजर आ रही है घर नजर आ रहे है जिसकी छत लाल कलर की नजर आ रही है एक कुर्सी नजर आ रही है।